कुछ फूल भी नजर आ रहे है और पीछे कुछ लाइटिंग भी लगाई हुई है।

और पीछे कुछ फ्रांस भी लटकी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर मे मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर अलग अलग प्रकार की कुछ लाइटिंग भी की गई है।

ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे हैं आसपास कुछ पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

इसके आसपास बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे है और कुछ फुल भी दिखाई दे रहे है।

और आगे एक लाल कलर कुर्सी भी नजर आ रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक छोटी सी दुकान नजर आ रही है जिसमें बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की --

इस तस्वीर में मुझे एक गैराज नजर आ रहा है।

और पीछे एक छोटीसी टी_वी भी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे शादी की फोटो नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक रोड नजर आ रही है।